और एक व्यक्ति नफाई कर रहा है और बहुत सारे गुम्मे रखे हुए है और खुदी हुई मट्टी भी डली हुई है।

और एक व्यक्ति रिक्शे के अंदर बैठा हुआ है और इधर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये बहुत --

और इधर बहुत सारे गाड़ियों एवं रिक्शे खड़े हुए है और बहुत सारे लोग फोन से वीडियो भी बना रहे हैं।